यहाँ पर एक नीचे पुलिस वाला खड़ा हुआ है और काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर से कार जाते हुए दिखाई दे रही है।

और बैठि लेके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा यहाँ पर हमें --

बाहर भी लेट लाइट्स लगी हुई हैं।

यहाँ पर हमें केमिस्ट की एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप के अंदर एक व्यक्ति मास्क लगा कर खड़ा हुआ है और वह --

दिखाई दे रही है उस पे माला चढ़ा हुआ है और नारियल भी दिखाई दे रहा है।

नीचे हमें कई सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं और नी सबसे नीचे पर हमें कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

पोस्टर्स बैनर्स भी दिखाई दे रहे है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है नीचे हमे --

हमें कुछ साईकल और कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ए.टी.एम के दोनों बाहर --

यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज बनी हुई है कुछ घास दिखाई दे रहे है और इनके पैरो के नीचे कुछ गोला --

जहाँ पर हमें काफी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक खड़ा हुआ ट्रक दिखाई दे रहा है।